लिखा हुआ है नाइन से ट्वेल्व तक का ये मुबारक कुशन फाउंडेशन रामपरा कटिहार में है।

ये ए_के फिटनेस जिम का अ सेलिब्रेशन हो रहा है जिसमें बहोत सारे--

ये मेडिकल इंस्टिट्यूट हैं जिसमें शीशे की दीवार लगी हुई है एक पेशेंट टेबल पर लेटा हुआ हैं।

एक व्हाईट कलर का टीशर्ट पहना हुआ हैं दाढ़ी है मूंछ हैं पसीना से लतपत हैं लड़का बाल ल लंबे लंबे हैं।

चार अ लीची के गुच्छे हैं एक गुच्छा में बहोत सारी लीची है पत्ता से गुच्छा बनाया हुआ है।